एक रोड पर जा रही है।

यह एक स्टेट बैंक ऑफ़ ए_टी_एम है।

दीवाल पर योगे के चित्र बने हुए हैं।

बिल्डिंग सफेद रंग की खड़ी है।